जहाँ पर फैक्ट्री लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मोबाईल नंबर नाइन फरो थरी वन ज़ीरो थ्री ज़ीरो त्रिपल फोर लिखा हुआ है।

सजाया गया है सामने दो व्यक्तियों की डमी को पहरेदार बना के खड़ा किया गया है।